सामने एक रोड का व्यूव है जो बहोत ही सुंदर दिख रहे है ऐसे रोड पर दो कारे हैं।

वो हार्लिक्स दे रहा है और दूध।

सामने एक टी_वी_एस अपाचे के बाइक लगा हुआ हैं।

और उ लग रहा है उसका उद्घाटन हुआ है सेव से केले के पत्ते से--